इस तस्वीर में हमें एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रही है।

पेट्रोल थोड़ी लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं।

ऊपर बहोत सारे बिजलियों के तार भी दिख रहे हैं।

एक फैन दिख रहा है।

तीन सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगें हुए --

यहां एक मछली कि दुकान है।

और एक व्हील दिख रहा है टायर दिख रहा है।

उधर एक का कार बोर्ड का पिस लगा हुआ है।

आदमी दिखाई दे रहा है जो कि वो बाइक पे बैठ रहा है।

इधर चार पांच बाइक नजर आ रहे हैं और एक ब्लू कार है।

एक आदमी बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक--

यह कन्नड़ा में भी लिखा हुआ है श्री सस्ता।

और थोड़े सामान पड़े हुए हैं बोरी में भर के रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

आजु बाजू थोड़े पेड़ है।

बहुत सारे बलूंस हैं और भी उसके बीच में--

यहां एक सड़क है जहां पर बहोत सारे पेड़ आजू बाजू पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

सब सीमेंट हुआ है सब सीमेंट कलर का घर बन रहा है।

चित्र में दो बड़े बड़े पत्थर और एक छोटा पत्थर भी दिख रहा है।

बस ड्राइवर और बस कंडक्टर दोनों बस के बाहर खड़े हुए हैं।

टो दिखाई दे रही है।

और एक कम्बा भी है।

और थोड़े डमरू भी हैं।

इसके बाजू में तो साइकल नजर आ रही है।

एक चेयर दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक कोई दिख रहे बहुत सारे बच्चे हैं।

और एक सर हैं जहां पर वो कराटे सिखा रहे हैं।

ऊपर बहोत सारे हरे हरे पेड़ लगे हुए है।

इस तस्वीर में हमें बहुत एक लंबी क्यू दिख रही है।

एक बस दिख रहा है और एक आदमी ऐसे जा रहा है।

इधर बहुत सारे सामान है बोरी में है।

बहोत अच्छा लग रहा है एक कुर्सी दिख रही है।

दो तीन गाड़ियां दिख रही हैं और ऊपर लाइटे नजर आ रही हैं।